और उसमें लाल कलर की टाइस लगी हुई है।

और उसमें कुछ हरी पत्तियां भी लगी हुई हैं।

जिसके सामने एक किराने की दुकान है।

यहां पर उस्कूल में कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं।

यह एक फूल माला बेचने की दुकान है जिसमें सब और--